मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है और दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा है जहाँ पर लोग ठहरे है तिन लोग वो भी दिखाई दे रहे है कुछ बादल रंग-बीरंग दिख रहा है और कुछ पेड़ भी रंग-बीरंग दिख रहे है और हरियाली है निचे--

दरवाजे के ऊपर है वो भी देखाई दे रहा है बादल भी दिखाई दे रहे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे कुछ हरियाली भी दिखाई एक लड़का है नीली शर्ट में वो भी दिखाई दे एक छोठा बच्चा है वो भी दिखाई दे रहा क आदमी है वो भी दिखाई दे रहा है।